बहुत ज्यादा इसमें पानी हैं और ये नदी में बहुत साफ पानी है और इसमें नहाया जाता है और पटवन के लिए यूज़ किया जाता है।

सब लोग कपड़ा लेते हैं और तरह तरह का मेला लगता है बहुत भीड़ रहता है बहुत ज्यादा।

यह गेरेज है यह गेरेज में गाड़ी खराब हो जाया जाता है तो लाके यहाँ बनाया जाता है और कहीं एक्सीडेंट कर जाता है गाड़ी तो उसको भी लाके यहाँ बनाया जाता है |

यह गंगा जी है इसमें देखिए बहुत लोग आते हैं इशनान करने के लिए और बहुत ही भीड़ रहता है ।